सामने पेट्रोल पंप है गाड़ी है।

यहां पे टॉय स्टेशन है जहां पे बच्चे बच्चे का खिलौना मिल रहा है।

यहां पे साड़ी का स्टॉल है जहां पे सोफा लगा हुआ है और बिल्डिंग है बड़ी बड़ी।

के घेरा हुआ है जो देखने में अच्छा लग रहा है।

यहां पे हरा बोर्ड लगा हुआ है और तरुण पुष्कर मेरिश गार्डन है।

यहां पे टेंपल में लिखा हुआ है वेलकम टू मां कामख्या दिवाले--

अलग अलग शॉप है इसमें एक डेरी है ए टू जेड अमूल का।

जो देखने में बहुत सही लग रहा है और --

स्क्रीन में कुछ दिखा रहे हैं जो देखने में सही लग रहा है।

सीरी लगी हुई है जहां से आदमी अन्दर आते है यहां पे कितने सारे लोग--

और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ए_टी_एम है और वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है।

और ऊपर होटल है जहां पे आदमी धड़ सकता है।

और भी कपड़े वपड़े भी हैं और यहां पर ट्रायल रूम भी है जो ट्रायल कर सकते हैं।

और यहां पे होमयोपैथी की अलग-अलग दवा रख--

अलग-अलग ऐप से भी पे कर सकता है जिसके पास अगर स्कैनर नहीं हो।

बड़ा सा मोहल है जहां पे सभी समान है।

से और सेल लगा हुआ है जहां पे आदमी कम में खरीद सकता है कुछ भीये--

यहां पे बुक स्टॉल है जहां पे सभी आदमी जा रहे हैं और यहां पे बाइक सारे लगी हुई है।

पूजा करते हैं फिर यहां पर जाते हैं पूजा करने के लिए--

यहां पे आदमी है और तालाब है और बिल्डिंग है।

कूलर भी लगा हुआ है ताकि घरमी नहीं लगे ।

का जो मन करता है वो खेलते हैं औ--

यहां पे पहाड़ है और उसके नीचे --

एक आदमी सेल्फी ले रहा है जो दिखा रहा है की पीछे कैसे पूजा करते हैं।

खंबा है बगल में जहां पे टर लगे हुए हैं मस्जिद का भी खंबा एक बड़ा सा है।

मतलब दूर से भी आदमी देख सकता है कि यह मस्जिद है।

यहां पे सभी ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं और ऊपर में --